बाहर बोर्ड मे बहुत सारे राशन दिखाए गए है जैसे आलू टमाटर प्याज के बोर्ड लगे है।

नीचे पर्दा लगा है टेबल के नीचे पर्पल कलर का।

बाहर एक बाइक खड़ी है।

दो मशीन है नॉर्मल मशीन ।

यहां कोई गंगा नदी की तरह दिख रहा है बड़ी है नदी।

कई प्रकार की पुस्तकें रखी है।

बड़ी सी पीपल की पेड़ है जिसके नीचे अच्छी छाव लग रही है।

यहां पर दो दुकान है।